जैसे की आप देख सकते है गाइज ये कोलेज है जो प्राइवेट कोलेज हैं यहाॅं पे इंग्लिस मीडियम है क्यों की यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं।

गाइस आप इस वक्त ये आप देख रहे हैं ये शादी का एक मंडप है। बहुत ही लोग आते जाते हैं वो इधर से सामने जाएँगे।

यहाँ पे देख सकते हैं बहुत महंगा होटल लग रहा हैं क्युकी यहाँं पे ऐ.सी भी लगी हुई है और टेबल भी बहुत अच्छी साफ सुथरी लगी हुई हैं।

गाइस ऐसा अक्तिवा की निम सामने पेटी रखी हुई है कुछ गाडी खड़ी हुयी हैं कुछ लोग ले भी रहे हैं आप देख भी सकते है।

जो की अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन बहोत ही लग रहा है लेट है इसलिए सभी लोग बैठ गएँ --

गाइस आप सब लोग देख सकते हो ओ की ये जो पेड़ के पत्तों से जो धूप निकल के नीचे आ रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग रही है।

नज़ारा है ये ड्रोन से लिया गया --

जो यहाँ पे ये गाड़ी सब पार्क होतीं हैं। ये सब गाड़ीयाँ यहीं से पेट्रोल भार के जातीं हैं। क्योकि यह सरकारी गाड़ी हैं। इसलिए यह अपने टाइम टेबल से जाती हैं आतीं --

ट्री बोतीत किनारे गाड़ी खड़ी है सामने की तरफ जाने का बहुत ही अच्छा गेट दिखाई दे रहा है यहाँ।

जैसा कि गाइस सब देख सकते है। ये कॉलेज की फोटो है जो स्टूडेंट है वो वहा पे खड़े हुए हैं जो एक स्टूडेंट है पता नही आलस कर रहे है। अंदर जा --